जैसा की हम देख सकते हैं की ये सफेद कलर का मन पूता हुआ है मन --

वही एक आँटी आपको पूजा करते हुए दिखेगी।

यहां में देख पा रहा हू कि यह एक मंदिर है जिसमें माता रानी विराजमान हैं इसी मंदिर में एक पेड़ है।